एक पटरी दिखाई दे रही है और आस-पास बहुत सारे पेड़-पोधे भी दिखाई दे रहे है जो के हरे रंग के है।